इस मंदिर को देखने यहाँ पे पूजा करने इस मंदिर में बहुत सारी सीढ़ियां हैं। लोग सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जेक पूजा करते हैं और यहाँ पर काफी भीड़ होती है।

यह रोड काफी बिजी रहता है और इसके बगल में बहुत सारे घर है बड़े-बड़े घर है।

बहुत ही बड़ा है और ये घर पीले कलर का है इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं इसमें बहुत सारे कमरे हैं ये घर देखने में बहुत ही खूबसरत है।

काटे जाने वाले हैं यहाँ पर बहुत सारी क्रीमें होती है जिससे लोग फेशियल करवाते हैं और यह बहुत अच्छा सैलून है।

यह एक कोई भवन है। यह भवन बोहोत सुंदर है और यहाँ पर एक अ छोटा सा मैदान है जिसमे बोहोत सारे घास है और काफी हरा-भरा है । यहाँ पे देखने में बोहोत ही सुंदर लग रहा है । बोहोत सुंदर नजारा है ।